वेट कर रहे हैं बिल्डिंग है पूरी की पूरी इसमें अलग अलग अलग अलग--

अह ओके अपने कोर्स के लिए किताबें मिलती हैं एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है और दूसरा लड़का दूर से देख रहा है उसको बुक सेंटर है ये।

और बैठक है उनमें जो सेल्स पर्सन बैठता है फिर कस्टमर आके कुर्सियों पर बैठते हैं और फिर वो लोग दिखाते हैं तो ये एक शोरूम की फोटो है जहां पे कपड़े दिखाए जाते हैं।

और दुकानदार उसका भाव लग रहा है। कस्टमर वहां पे देख रहे हैं। उससे पूछ रहे हैं।

अपना वर्कआउट कर रहे और दो लोग हैं जो अपना फोटो ब्लर कर दिए चेहरे को उनके--

ये नाइट व्यू है बाहर कोई मतलब प्लेग्राउंड है वहां पे आस पास में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं कोई गार्डन टाइप का है।

यह एक हॉल बना हुआ है जहां पे मतलब कालीन वगैरह बिछा हुआ है और पूरा मतलब लाइटिंग वगैरह का सीन है।